अंदर रैक है रैक का रंग ग्रे है।

इसपे गुलाबी और नीले रंग से कुछ लिखा है।

पिछे पर्दा लगा है जो कि पीले रंग का है।

इस फोटो में घर है जिसके ऊपर पीले रंग का पोस्टर है जिसमें लाल और काले रंग से लिखा है।

आसमान में धूप निकला है और आसमान सफेद है।

इस फोटो में एक रोड है और एक बड़ा सा सामने पेड़ है जो कि हरे रंग का है और उसका तना काफी मोटा है।

एक आदमी है जो साइकिल से जा रहा है उसने नीले रंग का टी शर्ट पहना है और उसी के बगल में एक ठेला है।

उसके ऊपर कई सारे आदमी लोग बैठे हैं और उसमें कुछ लिखा है।

कई सारे तारे पर हुई है आसमान ने नीला है।

जिसमें बहोत सारे बड़े बड़े बिजली के टावर है उनमें बहुत सारे तारे पार हुई है और ये सारे टावर लोहे के है।

इस फोटो में एक बड़ा सा जगह है और बीच में एक स्टैंड जैसा बना है जिसमें हरे और सफेद रंग के पिलर लगे है और ऊपर से शेड बना है।

इस फोटो में एक बड़ा सा खेत है जिसमें धान रोपा है जो हरे रंग का है।

इस रूम का रंग पीला और बैंगनी है।

उसके अगल बगल भी कई सारे लोहे के सामान है जो कि भूरे हैं।

पीछे रैक पे बहुत सारा सामान रखा है।

में बहुत सारा कागज का क्राफ्ट्स आइटम रखा है।

कई सारे आदमी लोग हैं जो कि कुछ कुछ बना रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा गेट है जो कि भूरे और सिल्वर रंग का है जो कि काफी बड़ा है।

कई सारे आदमी लोग है सामने एक ठेला है।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा दुकान है जो की नीले रंग का है।

इस फोटो में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है।

कई सारे तारे पार हुई है एक औरत के हाथ में झोला टंगा है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप है जिसमें दो पेट्रोल भरने की मशीन है।

इस रूम के ऊपर लाइट जल रहा है और छत पर बहोत सारा सोलर प्लेट लगा हुआ है।

बगल में कई सारे मिट्टी के पहाड़ जैसे बने हैं और अगल बगल छोटे छोटे हरे हरे घास फूस जमे है।

सामने तीन आदमी है एक आदमी के हाथ है प्लास्टर हुआ है और एक आदमी खडा है और सरिए को पकडा है।

इस फोटो में एक रूम है जो की सफेद रंग का है।

सामने एक पलंग का सामान रखा है जो की काफी सुंदर है और भूरे रंग का है।

छोटे छोटे साइकल भी रखे हैं जिनमें आगे की ओर डिग्गी लगा है।

फोटो में एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि सफेद रंग का है इसमें कई सारी खिड़कियां और कई सारे गेट है और कई साले पिलर्स है।

नीचे बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस है और बड़ी बड़ी झाड़ियां भी है।

काफी बड़े बड़े लंबे लंबे हरे रंग के पेड़ है।

इसपे कई सारे बच्चे और बच्चिये लोग है।